पेहने हुए है उसपे ह लाल रंग की आकृति न बनी हुई है।

छोट छोटे कार्टून रखे हुए है जिसमे समान रखा है और कुछ समान नीचे फर्श पर फैला हुआ है पीछे भी।

एक एक पेट्रोल पंप का दृश्य है जहाँ पर एक पेट्रोल पंप बॉक्स लगा हुआ है उसपे मीटर दिखाई दे रहा है आकृति बानी है जो की गुलाबी और --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

ये एक लॉज का दृश्य है जिसमे समाने की दिवार है दिवार गुलाबी रंग से रंगी हुई है यहाँ पर --

घास नज़र आ रही है नीच सड़क पे जहां पे कईं सारी बसें खड़ी हुई हैं एक बस है जो की नीले रंग की है जिसपे सफ़ेद रंग से और लाल रंग से --

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है जहाँ पर पेट्रोल पंप बॉक्स रखा हुआ है जिस पर आकृति बनी हुई है ये हरे रंग से रंगा हुआ है।

लगे हुए है दिन का समय है आसमान में बदल छाये हुए है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ों पर हरी-हरी पत्तियाँ लगी हुई है घर दिखाई दे रहा है जो कि हरे रंग का है जिसकी छत नज़र आ रही है।

लगे हुए हैं आस-पास वाहन दिखाई देरें जिनमे समान लोडेड है और वे लोग सड़क पे नजर --

ये एक बिल्डिंग का दृश्य है जो पिले रंग से रंगी हुई है इसका दवार नज़रआ रहा है द्वार पर एक बैनर लगा हुआ है।

सूरज के रैली में चारों तरफ पर्ची नाज़ा आ रही है।

रैक दिखाई दे रहे हैं रैक में सामान रखा हैनीचे पैर फर्श है जहां पर मार्बल लगी हुई है यहाँ पर सीटे --